ऊपर में मां चंचला ड्राई फ्रूट लिखा हुआ है।

अंदर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है टेबल के ऊपर ड्राई फ्रूट्स का--

ऊपर में फैन और ट्यूब लाइट भी है टेबल के ऊपर पानी बॉटल भी रखा हुआ है।

बगल में दुकान भी है बाइक रिक्शा और बाइसिकिल भी है।

ऊपर में बहुत सारा लटकाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में सफेद रंग का बिल्डिंग दिख रहा--

दीवार में पोस्टर और स्विच भी लगाया हुआ है।

वो का गार्डन दिख रहा है।

टेबल के ऊपर दो सॉस बॉटल रखा हुआ है।

इधर में दो मनुष्य बैठा हुआ है और बहोत सारे मनुष्य खड़े होके हैं।

नीचे में बड़े बड़े पेड़ भी हैं और बगल में छोटा सा घर है।

बाहर में बहुत सारा चप्पल भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत बड़ा मैदान दिख रहा है।

और नीचे में लाल बॉक्स भी है।

बाहर में चप्पल भी रखा हुआ है।

शेल्फ के ऊपर बहुत सारा किताब रखा हुआ है।

आईना भी रखा हुआ है।